एक दुकान का फोटो है दुकान मे बहुत सारी समाने रखी हुई है। बहुत सारी डब्बे रखे हुए है।

और यहां पर बहोत सारी कार्पेटे बिछाई हुई है।

यह एक बहोत बड़ा सैलून है जिसमें बहोत सारे आदमी है।

एक आदमी ने उजले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है और यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी है जिसका कलर लाल है।

यह एक रूम का फोटो है रूम का का कलर पीला और उजला है और बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

यहां पर एक पिंक कलर का खंबा भी है यहां पर बहुत सारे खंबे हैं जिसमें बहुत सारी तारे लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़े दुकान का फोटो है यहां पर बहुत सारी रैके ल रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे सामानें रखी हुई है जिसमें चार्जर और केबल ये सब है।

यहां पर झंडा भी है यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है उधर बहोत सारे घर हैं।

दोनों का कलर उजाला और लाल है यहां पर बहुत सारी रैंके बनाई हुई है और रैक पर बहुत सारी समाने रखी हुई है।

और यहां पर एक पाइप भी है यहां पर बहुत सारे घास फूसे भी हैं।

यहां पर नीचे में बहुत सारी पोल्स रखी हुई है यहां पर बहुत लंबे लंबे तार भी हैं।

ये लगी हुई है और यहां पर बहुत सारी तारे हैं यहां पर एक झंडा भी है।

लिखा हुआ है सुनील पेंटर और यहां पर एक बहुत बड़ा शीशे का दरवाजा भी है।

और यहां बहुत बड़ी बड़ी डिब्बे रखे हुए हैं।

यहाँ पर नीचे मे बहुत सारी टाइल्से है यहाँ पर बहुत सारी फूलें रखी हुई है नीचे मे।

और यहां पर एक हैंडल भी है यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

यहां पे बहुत सारे बोर्डे लगी हुई है यहां पे बाइक भी है यहां पे बहुत सारे आदमी भी हैं।